आदमी है जो के हरे रंग का कुर्ता पहना है और उसके हाथ में सफेद कलर का कुर्ता है।

एक पार्क है यहाँ पर काफी सारी ए-- यहाँ लोग खड़े हुए हैं। एक ये जानवर बना हुआ है उस पे कुछ बच्चा बैठा हुआ हैं एक सामने नीचे फिरोज़ी कलर के उसके आस-पास की चीज़े बनी हुई हैं।

आसमान है और ऊपर की तरफ रोड दिख रहा है।